सुनहरी रंग के बलब जल रहे है।

फ्रिज के एंगल फिरोजी कलर के हैं।

हरे रंग के पौधे हैं जमीन पर हरे रंग की घास है।

चॉकलेटी रंग की जमीन है पीले रंग का पाइप है।